जैसा कि हम देख सकते है सामने हमको एक नाव दिख रही है नाव दो चार दिख रही है नाव के आस-पास हमको बहुत नदी वदी दिख रही है जोकि पानी भरा हुआ दिख रहा है पीछे हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं जोकि बहुत ही अच्छे दिख रहें हैं।

जैसा कि हम देख सकते हैं सामने हमको बोहोत ही सारे बच्चे दिख रहे हैं। ये बच्चे जो हैं स् एक सर दिख रहे है जो कि सर के साथ बच्चे बैठे हुए हैं। इनको कुछ बिस्किट के पैकेट बाँटने के लिए लग रहे जो कि पीले कलर के दिख रहे।

पीछे हमको हरे भरे पेड़ दिख रहे है जोकि बहुत ही सुंदर लग रहे है और नीचे हमको बच्चे के पैरों में चप्पल दिख रही है जोकि बहुत ही गरीबो जैसी चप्पल दिख रही है।

पीछे हमे बहुत सारी बुक्स दिख रही है ऊपर सीलिंग दिख रही है जोकि व्हाइट कलर की दिख रही है जिसमे लाइटे लगी हुई हैं जो नीचे उजाला करती हुई दिख रही है जोकि बहुत ही अच्छी लग रही है और --

जैसा कि हम देख सकते हैं शाम को हमको ब्रिज दिख रहा है ब्रिज के नीचे का हिस्सा दिखा ब्रिज कि दीवार दिख रही है जिस पर हमको स्वछता का लोगो दिया हुआ दिख रहा दो हजार बइस का इसमें एक महिला दिख रही है जो --

जैसा कि हम देख सकते हैं सामने हमको बुद्ध भगवान की मूर्ति दिख रही है। मूर्ति हमको टेंट लगा हुआ दिख रहा है जो टेंट बोहोत ही अच्छा दिख रहा है। नीचे कुछ लोग बैठे हुए दिख रहे हैं जो कि बोहोत ही अच्छे दिख रहे हैं।

पीछे सुदर्शन चक्र के जैसा चक्र बना हुआ है। बाबा साहैब आंबेडकर का फोटो लगा हुआ है। बैनर लगा हुआ है। नीचे लोग बैठे हुए है हार लगे हुए है जोकि बहोत ही सुन्दर लग रहे है। बहोत ही प्यारे लग रहे है।

जैसा की हम देख सकते है सामने हमको बहुत सारे बच्चे दिख रहें हैं बच्चे स्कूल के बच्चे दिख रहें हैं जोकि इनको अभी कुछ बाँटने ने के लिए गिफ्ट रखे हुए दिख रहें हैं ऐसा लग रहा है बैग वैग रखे हुए है पीछे एक मैडम दिख रही हैं।

मंदिर के आगे आदमी खड़ा हुआ दिख रहा है जिसकी टी-शर्ट पहनी हुई है। गुलाबी कलर की टी-शर्ट पहनी है। पीछे हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं जोकि बहोत ही सुंदर लग रहे हैं। बहोत ही प्यारे लग रहे है। बहोत ही अच्छे लग रहे हैं।

जैसा की हम देख सकते है सामने हमको सलून दिख रहा है सलून मे हमको सामने कांच लगे हुए दिख रहे हैं कांच के बाहर हमको लोग दिख लोग दिख रहे हैं लोग जो कटिंग करते हुए दिखाई दे रहा है जिसमे एक आदमी हसते हुए दिख रहा है।

नीचे नदी मे पानी दिख रहा है जोकि फुल्ल नदी भरी हुई दिख रही है एक आकडा दिख रहा है जोकि इसको --

नीचे हमको सफ़ेद कलर का वटला बैठा है जिसके ऊपर यह वटले पे बैठे हुए दिख रहे है एक लड़का बैठा है खड़ा है जिसने सफेद शर्ट पहना हुआ है जोकि सामने की ओर दिख रहा है और अपने आप को पता नहीं क्या समझ --

जैसा की हम देख सकते हैं सामने हमको एक महिला आदमी दिख रहा है महिला दिख रही है आदमी समझ नही आ रहा है झाड़ू लगाते हुए दिख रहे हैं नीला शर्ट पहना हुआ है जबकि ऐसा लग रहा है साड़ी पहनी हुई है।

पीछे गली दिख रही है जोकि बहुत ही सुंदर लगरी है बहुत ही प्यारी लगरी है बच्चे भी बहुत ही प्यारे और बहुत ही सुंदर और बहुत ही माशाअल्लाह अच्छे --

जैसा की हम देख सकते हैं सामने हमको डॉक्टरो की टीम दिख रही है सभी डॉक्टर दिख रहै है कोई कम्पाउण्डर दिख रहा है इन सभी ने मास्क पहने हुए दिख रहें हैं इनके कपड़े जो है हरे कलर के दिख रहै है।